कुछ लड़के दिख रहे हैं साइक में एक खंभा दिख रहा है और सामने कुछ घास दिख रही है और इसका इसमें कुछ एसिया दिख रही है लगी हुई और कुछ वायर दिख रहे हैं।

ए.सी.सी सीमेंट हार्डवेयर की शॉप दिख रही है जिसमे बहुत सारा अंदर समान दिख रहा है उसमें एक कुर्सी रखी दिख रही है इसमें एक फैन हैं।